गाइज़ जैसा कि आप यहाॅं पे देख सकते हैं यहाॅं पे आपको एक खटारा सी गाड़ी रखी हुई दिखाई दे रही है।

दे रहा है ना यहां पे आपको देखिए तो कितना सारा पेड़-पौधा सब दिखाई दे रहा है !

दोस्तों हेलो नमस्कार आप यहाॅं पर देख रहे हैं यहाॅं पर आपको क्या दिखाई दे रहा है ? एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

हेलो दोस्तों गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं ना यहाँ पे आपको एक कार दिखाई दे रही है।

हैलो गाइस दोस्तों यहाॅं पे आप देख सकते हैं यहाॅं पे आपको कितना खूबसूरत सा एक वाटर पार्क दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है झूले दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का गेट दिखाई दे दे रहा है।

यहाँ पे आपको खंभा लगा हुआ दिख रहा है।